और लाइट भी लगा के है।

और ये सब प्लेट में रखे है।

यहां में बहुत ज्यादा बच्चा लोग है।

फैन और लाइट भी लगा के है।

और छत भी टीना से बना हुआ है।

टच होता बॉक्स लोग भी है।

साइड साइड में फूल वाला है।

एक माला का दुकान है।

ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं।

दुकान को फूल से सजा हुआ है।

फूल उगने के लिए एक गेट भी बना के है।

येलो से एक बड़ा से पेड़ है।

और बम्बू पेड़ भी बहुत ज्यादा है।

और छत भी तीना है।

सब मशीन मिट्टी में रखी हैं।

और छत जो गोल से है।

बहुत ज्यादा इंसान लोग भी है।

धूप भी बहुत ज्यादा है।

और कालर बाल्टिंग भी है।

यहां पर बहुत ज्यादा घर है।

सोना और चांदी कलर में बहोत ज्यादा समान है।

चेयर के कलर लाल है।

और दरवाजा जो सजा के है।

ये एक बड़ा सा दुकान है।

और पानी भी बहुत ज्यादा गंदा है।

ये एक क्लास रूम है।

दीवार का कलर ग्रीन है।

और ये एक कपड़ा का मॉल है।

पेड़ लोग भी हैं।

गणेश जी की मूर्ति भी रखी है।

और बड़ा से दरवाजा सजा के है।

एक पार्टी का माहोल है।

और ग्राउंड जो ब्राऊन कलर में है।

ऊपर में बहुत ज्यादा फ्रेम लगा के है।

बाउंड्री भी लगा के है।

ये दो दरवाजा दिखाई दिया गया है।

सब इंसान आराम से बैठा हुआ है।